यहाँ एक छोटा-सा पोखरा भी है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

यह एक वी-टू मार्ट है।

और यहाँ बहुत सुरक्षा के साथ कपड़ा मिलते हैं।

इसके बगल में नदी भी है जो देखने में बहुत अच्छा --

यह एक डैम का फ़ोटो दिखाया जा रहा है।

और ये डेम से मछुवारे लोग मछली पकड़ के अपना गुजारा भी करते --

यह एक कपड़ा का दिखाई दिया है।

यह एक नदी का फ़ोटो दिखाया जा रहा है।

और इ यह हिन्दू धर्म का मंदिर है।

बहुत गाड़ी पेट्रोल भराने के लिए आते है जैसे की फॉर व्हीलर टू व्हीलर बाइक --

यहाँ बहुत आदमी जैसे शादी में कोई फेस्टिवल रहता है उस समय यहाँ ये डी.जे. को बुलाते है।

और यह छत में बहुत आदमी कपडा सुखाने रहने के काम भी अता है।

यह एक जर्सी गाय का फोटो दिखाया गया है।

और बहुत उह आदमी यह गाय को रखता है।

जैसे केक रसगुल्ला बर्गर और भी समान यहाँ मिलते हें।